ज्यादातर येलो और रेड पट्टी --

एक लोहै का गेट नजर आ रहा है जिसमे टाटा मोटर ऑथॉराइज़ सर्विस स्टेशन डुलेक्स ऑटो केयर लिखा हुआ है।

स्टीकर लगाए गए है हिरण का स्टीकर लगाया हुआ है एक पोर्टेड डाइनिंग टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है।

और पानी यहाँ पर रेक में भरा हुआ दिखाई दे रहा है नीला आसमान--